यह एक होटल है इस होटल में आदमी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं।

इस दुकान में बड़ा सा सोलर लगाया गया है और पंखा भी है।

गमला में पौधा भी लगाया हुआ है।

स्कैनर भी रखा हुआ है।

यह एक धार्मिक स्थल है इस स्थल पे बहोत सारा लड़का लड़कियां दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे पाइपें है और एक फोर व्हीलर खड़ा है।

इस झरना के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

इस मंदिर में बहोत तरह तरह के द्वारे बनाए हैं।

यहां दोनों तीनों तरफ से खिड़कियां हैं।

यहां पे सामने एक बड़ा सा मकान व्हाइट कलर का दिख रहा है।

बस का कलर व्हाइट है।